यहां पर बहुत सारे समोसे भी रखे हुए हैं।

इस रेस्टोरेंट में ए_सी और पंखा भी लगा हुआ है।

यह एक जिम की तस्वीर है।

यहां पर बहोत सारे पेड़ लगे हुए हैं।

इस शोरूम मे बहोत सारे स्कूटी और बाइक लगे हुए है।

मंदिर के ऊपर सांप बना हुआ है।

इस तस्वीर में बहुत सारे लोग चलते हुए और कुछ लोग बैठे हुए दिख रहे हैं।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

पुलिस स्टेशन के अंदर एक टावर लगा हुआ है।

इस तस्वीर में शाम का समय हो रहा है।

आदमी एक पीले रंग का जैकेट पहना हुआ है।

इस तस्वीर में शादी की बहुत अच्छी सजावट की हुई है।

इस तस्वीर में कारपेट का रंग हरा है।

यह एक फैमिली सैलून है।

यहां पर बहुत सारी लाइटें भी लगी हुई हैं।

इस तस्वीर में बहोत सारे बच्चें पीले रंग के टी शर्ट पहने हुवे हैं।

इस रेस्टोरेंट में घासे भी लगी हुई है।

इस फार्म मे बहोत सारे पौधे लगे हुए हैं।

तस्वीर किसी कार रिपेयरिंग सेंटर की है।

इस पार्क में बहुत सारे जानवर के पुतले बने हुए हैं।

उन पुतलो को एक बच्चा देख रहा है।

यह एक्वारियम शीशे का बना हुआ है।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

इस दुकान के बाहर बहुत सारे कुछ लिखे हुए है।

ये तस्वीर एक टोल गेट की है।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

इस टोल गेट के पास बहुत सारी गाड़ियां आ रही हैं।

दुकान के बाहर एक ग्रीन कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ है।

यहां पर बहुत सारे वेटर्स काम कर रहे हैं।